libreoffice base पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
complex जटिल forms के इस tutorial में हम in बारे में सीखेंगे
एक complex form को बनाना और form में बदलाव करना
पिछले tutorial में हमने सीखा था कि forms का उपयोग करके कैसे data प्रविष्ट करें और libreoffice base का उपयोग करके कैसे forms में बदलाव करें
इस tutorial में एक complex form को बनाना सीखते हैं
चलिए सबसे पहले libreoffice base program खोलते हैं यदि वह पहले से नही खुला है
और अपना library database खोलते हैं
यदि base पहले से ही खुला है तो हम library database यहाँ file menu में open पर क्लिक करके खोल सकते हैं
या file menu में recent documents पर क्लिक करके
एक नया form बनाते हैं जो हमें library के सदस्यों को दी गयी पुस्तकों की खोज करने में मदद करेगा
चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस form को बना सकते हैं जो screen image पर दर्शाया गया है
libreoffice base मुख्य window पर जाते हैं और base panel में database सूची में forms icon पर click करें
और फिर use wizard to create form पर click करिये
यह forms window खोलता है और अब सबसे ऊपर परिचित wizard
हम इस wizard को विस्तार में पहले ही देख चुके हैं अतः हम अभी इसके साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं
step 1 में field selection चलिए tables or queries label के नीचे drop down box में से tables: booksissued चुनते हैं
double arrow button का उपयोग करके सभी fields को बायीं से दायीं तरफ स्थानांतरित करते हैं
next पर click करते हैं
यह step 2 है किन्तु अभी के लिए हम इस step को छोड़ देंगे और नीचे next button पर click करते हैं
हम अब step 5 में हैं पहला arrangement columnar – labels left चुनते हैं और next button पर click करते हैं
चलिए next button पर क्लिक करके step 6 भी छोड़ते हैं
step 7 ice blue चुनते हैं और next button पर click करते हैं
step 8 में form को books issued to members name देते हैं
और modify the form विकल्प पर click करिये
अगला finish button पर click करिये
ध्यान दीजिये कि wizard पॉपअप window जा चुकी है और हम form डिज़ाइन window को देख रहे हैं
यहाँ form को data प्रविष्ट करने के इस्तेमाल से पहले हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं
सबसे पहले सारे elements को जिसे हम form पर let रहे हैं उनको असमूहीकृत करते हैं
हम यह कर रहे हैं जिससे कि हम form पर विशिष्ट elements की विशेषताएँ आसानी से सम्पादित कर सकें
form के सारे elements को एक बार में असमूहीकृत करने के लिए हमें सबसे पहले सारे form elements को चुनना होगा
यह करने के लिए सबसे पहले form design toolbar खोलते हैं
सबसे उपर view menu पर click करके फिर toolbars पर click करिये और फिर form design click करिये
इस toolbar में एक बार mouse pointer icon पर click करते हैं जोकि पहला और सबसे बायीं तरफ का icon है
हम इसे अब से select icon बोलेंगे
यह क्लिक और ड्रैग करके form elements का चुनाव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं
अब form पर उपरी बायीं तरफ click करते हैं और तिरछा निचले दायीं तरफ drag करते हैं
अब आप काले और सफेद lines के एकान्तर का एक आयत यानि rectangle देखेंगे
चलिए सुनिश्चित कर lets हैं सारे form elements इस आयत के भीतर हैं
form elements के समूह को चुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे
अब हम देख सकते हैं कि यह सारे elements एक छोटे हरे boxes के अंदर बंद है
अब जो भी क्रिया हम यहाँ करेंगे इस क्षेत्र के भीतर सभी elements पर समान रूप से प्रभाव डालेगा
अब mouse pointer को यहाँ किसी भी label के उपर let जाते हैं
ध्यान दीजिये कि mouse pointer labels या text boxes के उपर plus चिह्न की तरह दिख रहा है
अतः चलिए label के उपर दायाँ click करते हैं और सबसे नीचे group पर click करते हैं और ungroup पर click करते हैं
अब एक शीर्षक लिखते हैं जोकि सारे form elements के ऊपर होगा
इसके लिए चलिए form एलीम्नेट्स को नीचे लाते हैं और फिर form के अंदर मध्य में
अतः पहले down arrow बटन लगभग सात बार दबाएँ
फिर राईट arrow की लगभग 14 बार
ध्यान दीजिये कि यह सारे चुनित form elements को form के दायीं और मध्य में खिसका देगा
अब cursor को वहां लाते हैं जहाँ हम शीर्षक लिखना चाहते हैं
यह करने के लिए form window क्षेत्र के उपरी बायीं तरफ click करते हैं
और enter बटन दो बार दबाइए
फिर tab बटन 4 बार दबाइए और फिर type करिये form to track books issued to members
अब जैसे ही हम विशिष्ट labels और text boxes पर click करते हैं हम देखते हैं कि यह elements विशिष्ट रूप से चुनित या चिह्नांकित हो गये हैं
ठीक है अगला form पर bookid और memberid labels को फिर से नाम देते है
हम यह bookid label पर double क्लिक करके कर सकते हैं जोकि एक नई परिचित properties window खोलता है
label के सामने book title type करिये
अब चलिए form पर memberid label पर click करते हैं
ध्यान दीजिए कि properties window refreshed हो गयी है और फिर से यहाँ हम label के सामने member name type करेंगे
जैसे ही हम tab बटन दबाते हैं हम देखेंगे कि form पर नया label बदल गया है
अगला इन elements का अब font sizes बदलते हैं
फिर से सारे elements को चुनते हैं
हम click drag और drop तरीका इस्तेमाल करेंगे
और double हम किसी भी label पर double click करेंगे जोकि properties window खोलेगा
font को खोजने के लिए नीचे scroll करते हैं और उसके दायीं तरफ वर्ग square button पर click करते हैं
नये पॉपअप window में bold पर click करते हैं और size 8 पर click करते हैं
और ok button पर click करते हैं
ध्यान दीजिये कि form में font अब bold और size 8 में बदल गया है
अगला सारे form elements को window के मध्य में स्थानांतरित करते हैं
इसके लिए हम सारे elements को चुनेंगे
अब किसी भी label पर click करते हैं और form डिजाईन window के मध्य की तरफ drag करते हैं
अब form को सेव करते हैं
और इस window को बंद करिये यह देखने के लिए कि अब हमारा form कैसा दिखता है
base के मुख्य window पर जाते है और दायें panel पर books issued to members form पर double click करिये
यह form खोलेगा जोकि data प्रविष्ट करने के इस्तेमाल के लिए तैयार है
अब इस form में हम कुछ मिसाल के तौर पर data देख सकते हैं
और book title और member name के सामने name कुछ संख्याएँ देखते हैं
जोकि सचमुच में books और members सूची में प्राथमिक संख्याएँ हैं किन्तु ज़्यादा अनुकूल संख्याएँ नहीं हैं
क्या आप असली name और book titles देखना चाहते हैं
और हम यह कैसे करेंगे
एक तरीका है कि form control नामक list box को जोड़ें
हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे लिस्ट बॉक्स और कंट्रोल्स के दूसरे रूप को जोड़ें और इस्तेमाल करें
अब हम लिबरऑफिस बेस में काम्प्लेक्स फॉर्म्स पर ट्यूटोरियल में समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में: हमने सीखा एल complex form को बनाना और form में बदलाव करना